बोई हुई है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है बीच में--

और खेतों में पानी खूब सारा है और सामने कुछ बिजली के खंबे पड़े हुए हैं सामने पहाड़ी इलाका है।

रखी हुई है सोफे के आगे एक नीले कलर की मैट बिछी हुई है।

और जिस फर्श पे रखी गई हैउस फर्श का--

साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैंजो कि बहुत बड़े-बड़े हैं।

अ जिस कमरे में बैठे हुए हैं उधर चारों तरफ दी अ खिड़कियां लगी हुई है।

इस फोटो में एक पहाड़ी इलाका दिखाया गया हैं जिसमें बीच में ज झरना बह रहा हैं पहाड़ों से।

इसमें बहोत सारे पहाड़ दिखाएं गए हैं जिसमें पहाड़ों के बीच से एक झरना बह रहा है।

और और सीट रखी हुई है।

जो कि देखने में ही बहुत सुंदर है इसमें बेड रखा हुआ है चेयर रखा हुआ है सामने सोफा लगा हुआ है।

यहां खूब सारे पेड़ दिख रहे हैं शीशा लगा हुआ है क खिड़की में पर्दा लगा हुआ है।

जिस अह जै जिसमें लिखा हो जिस एक बोर्ड भी लगा हो चैट विथ फॉल आर्ट गैलरी ।

इस फोटो में एक टेबल दिखाई गई है जो कि मैरून कलर की है जिसका--

यहाँं दो प्लेट रखी हुई है जो कि सफेद कलर की है दो से तीन ग्लास रखे हुए हैं जो कि काँंच के हैं।

और पहाड़ों पे घास उगी हुई है।

और एक लंबा सा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

एम चीजें रखी हुई है जिसमें कि एक टी|_वी है कुछ साउंड्स हैं।

इस इस फोटो में कुछ जिम मशीने दिखाई गई हैं जिसमें बहोत बड़े बड़े डंबल रखे हुए हैं।

और मशीने लेट के बैठ के एक्सरसाइज करने वाली रखी हुई है।

और वहाँं पर बहुत ही बड़े-बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच से रास्ते कटे हुए हैं।

उन पहाड़ों पे ही मकान भी बने हुए हैं।

इस फोटो में एक गैरेज दिखाया गया है जिसमें टूटी-फूटी गाड़ियाँं हैंएक गाड़ियाँं कोई रिपेयर कर रहा है। सफे-एक गाड़ी सफेद कलर की है एक गाड़ी--

ग्रे कलर की है इस जगह पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

कुछ गाड़ी सही कर रहे हैं। कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं।

उस सोफे के आगे दूल्हा और दुल्हन खडे हुए है दूल्हा गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए है।

और दुल्हन अ-लाल जोड़ा पहने हुए हैं ।

एक सोफा रखा हुआ है जोकि लाल कल--

बाउंड्री हैं। मॉल बने हुए है जैसे के पीछे जो दीवाले हैं--

इस फोटो में एक दुर्गे माता का--

गुब्बारे लगे हुए हैं जो कि तिरंगे में हैमतलब हरे और ऑरेंज और सफेद रंग में हैं।